संतरा दिखाई दे रहे हैं तीन सेट दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे फल फ्रूट ही फल फ्रूट नजर आ रहे हैं।

सामने एक छत डाला हुआ दिखाई दे रहा है जो कि अभी डला हुआ है नीचे बहुत सारे उसमें लक्कड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे का मैदान दिखाई दे रहा है और सामने कई प्रकार के लक्कड़ डले हुए है नीचे कुछ लगे हुए है तो कुछ डले हुए है।

सामने ए.टी.एम. की मशीन दिखाई दे रही है उसके साइड में एक टंकी रखी हुई है जिस पे बहुत सारे कागज डले हुए दिखाई दे रहें हैं।

सामने बहुत सारे डी जे दिखाई दे रहे हैं जिसपे शरमान हाइड्रो लिखा दिखाई दे रहा है यहां पर ऊपर डिस्को लाइट भी दिखाई दे रही है आसमान खुला दिखाई दे रहा है।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

पराठे नजर आ पराठे बहुत यम्मी दिखाई दे रहे हैं पराठे आलू मेथी के मिलावट के बने हुए हैं पराठे का आकार चौकोर सा दिखाई दे --

सामने एक केकड़ा सा दिखाई दे रहा है जो की बहुत गीली गीली सी ईली नजर आ रही है इनमे मूछें रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

दो पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और इस नदी में सारे चारों और लगे हुए पेड़ हैं हरी हरियाली सबकी परछाई नजर आ रही है।